और कुछ समान भी रखे हुए है |

यह एक बड़ा हाउस दिखाई दे रहा है और उसका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती है और उसके सामने पेड़ हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे एक पूल है उस पुल पे एक बाइक कुछ लोग उस पे बैठ कर जा रहे हैं ।

इसके बगल में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और इसके बाहर बहुत ही बड़े ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं इसके आस-पास सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं।

और उसके अंदर आदमी भी खड़े नजर आ रहे है। और एक कार भी लगाया हुवा है। घर बोहोत ही पुराना दिखाई दे रहा है।